इ कोनो पुस्तक भंडार सेंटर होवे जैमे पुस्तक तथा और किताब का दुकान होवे ऊपर बिल्डिंग बनल बाटे।

इ कोनों तलाब हे के सीन हवे जे मे में छोटा जलकुंभी या कुछ पानी वाला --